उस स्टेज पर बहुत सारी लड़किया है। वो नृत्य कर रही है।

यहाँ फूलो की दुकान है यहाँ पर बहुत सारे लाइटे लगी हुई है एक आदमी है वह खड़ा है।

दो तीन आदमी है वह ढ़ोल बजा रहा है पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे है।

यह एक समुद्र है इस समुद्र के अंदर बहुत सारी नाव है उस नाव के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

वह उन लोगो कों कुछ बता रहे है यहाँ पर सामने लकड़ि से आग जल रही है एक महिला है उस वह उसे देख रही है।